उम यहाँ पे हमे एक नदी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ लोग पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं और कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं पेड़ हमे यहाँ दिखाई दे रहे हैं

यहाँ पे हमें एक जिम की पिक नजर आ रही है जहां पे हमें बहोत सारे बैलून्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे है और बहुत सारे लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं।

फैन हमें नजर आ रहा है लाइट की ब्राइट हमें यहाँ शो हो रही है विंडोज़ हमें यहाँ नजर आ रही हैं टीचर्स हमें यहाँ नजर आ रही हैं।

यहाँ पे हमें एक शादी का गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ पे बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है और लाइट्स हमें दिखाई दे रही है।